एक सोसायटी का मेन एंट्री गेट है। ये गेट की पेंटिंग हरे कलर से की गई है और इसके अगल बगल चक्र बनाकर उसको सुंदर डिजाइन दिया गया हे ।

रानी लक्ष्मीबाई है महात्मा गांधी है बी आर अम्बेदकर है और सोलार सिस्टम का भी बोर्ड पे डिजाइन बना हुआ है।

और ये पार्क बोहोत बड़ा है इसके आस पास चारो तरफ पेड़ हिं पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ का टिकट का प्राइस दस रुपया है और लोग यहाँ पे पार्क मे एंट्री कर के योगा करते है ओर बच्चे खेलते है ।